यह तस्वीर एक मोबाइल दुकान के अंदर की है।

यह एक धर्म का प्रचार हो सकता है।

यहां पर देखा जा सकता है बहुत सारे व्यक्ति एवं महिलाएं योगा करते हुए दिखाई देते हुए प्रतीत होते हैं।

यहां देखा जा सकता है कि एक बस आ रही है जो कि उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ है।